और एक मोटर भी है। यहाँ पे स सारी मशीनें है। बहोत सारी मशीनें --

और पैसे निकालते हैं और जमा करते हैं। यहाँ पर इनके पै उम्म सब लिए सभी लोगों के पैसे सेव रहते हैं। चोरी नहीं होती है और इस बैंक का नाम --

लेकिन ये फोटो बोहोत ही अच्छी नहीं है। बोहोत ही बेकार फोटो लग रही है। पीछे पीछे झाड़ियाँ भी हैं और पेड़ भी हैं जो बोहोत अच्छे लग --

और एक बाइक है स्प्लेंडर काले कलर की। एक ग्राउंड है बाहर। ग्राउंड में पेड़ लग रहे हैं हरे कलर के जिसका कलर हरा है।

ये एक घर है। घर के बाहर की तस्वीर ली हुई है। यहां पर एक टॉवर चमक रहा है।

कृष्णा जी को देख रही है हाँ उसके ऊपर निरे चित्र बन रहे है भगवानो के और यहाँ पे कृष्णा जी छोटे बालको मक्खन खा रहे हैं और यहाँ पे एक गेट --